जिसमें फेयर एंड लवली का एड चल रहा है कुछ गाड़ी खड़ी हुई है कुछ स्कूटी है जिनके कुछ लाइट जल रहे है।

यह मूर्ति काले कलर की टेबल और काँच--

सामने घड़ी लगी हुई है पंखे चल रहे हैं लाइट्स हैं सारी चीजें हैं।

जहां पे गुब्बारे लगी हुई है एक फ्रिज है एक ड्रम है चेयर सजी हुई है टेबल सजी हु--

यह फैक्ट्री का एक एरिया है जहां पे मेकिंग का काम होता है जहां पर दो मजदूर काम कर रहे हैं यहां पे कुछ--

इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी रखी हुई हैं जैसे मीटर है जोकि पाइप से--

यहां एक लड़का कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो ले रहा है।

यह एक वॉटरफॉल साइट है जहां पे पत्थर है पानी कम है पानी थोड़ा सा है कुछ लोग हैं।

यह शादी समारोह का एक सेल्फी जोन है जहां पे कलरफुल पंडाल लगी हुई है कलरफुल लाइटे लगी हुई है हाई हार्ट शेप में--

यह एक सीटिंग एरिया है जहां बैठने के लिए कुछ चेयर रखे हुए हैं।

यह एक नदी है जिसके सामने पहाड़ दिख रहे हैं दो लोग नाव पे सवार हैं नाव पे कुछ सामान रखा हुआ है एक--

यह एक मंदिर का प्रारंभिक गेट है जिसके पीछे कुछ पेड़ है और मंदिर के क कलर --

ऐसे ही किसी ने गुलाबी सफेद और नीले कलर कपड़े पहने हुए है यहाँ पर एक मैडम है जो कि चश्मा लगाए हुए है पीछे एक --

यह एक गार्डन एरिया है जिसके आस पास पेड़ पौधे दिखाए गए हैं कुछ खंभे दी--

घर के चारों तरफ दीवार लगी हुई है।

यह एक छोटा सा दुकान हैं जिसके अंदर एक इंसान बैठा हुवा हैं सामने--

सामने कुछ चेयर रखी हुई है एक दो टेबल रखे हुए है।

पीछे पानी टंकी बना हुआ है एक घर दिखाई दे रहा है।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

सामने एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें प्लग लगी हुई हैं स्विच बिस्ट के सामने एक डब्बा रखा हुआ है जिसका ढक्कन नीले कलर में है।